यहां एक घर के अंदर दिखाई दे रहे--

उसके नीचे ब्राउन कलर से लगाके है।

फिटनेस बनाने वाला रूम दिखाई दे रहा है उसमें लड़का लोग कैंची पहना हुआ है।

उसके बाहर में एक बड़ा सा पेड़ है और जंगल भी दिखाई दे रहा है।

उसके सामने पेड़ लोग बहुत सारा दिखाई दे रहा।

यहां बहुत सारा चिरिया दिखाई दे रहे--

ऊपर नीचे बैठा हुआ है वो लोग सब।

दो पार्ट में लाइट जल की चमक के दिखाई दे रहे हैं।

लाल का हाफ पेंट पहना हुआ है।

ये रूम में दो टेबल दिखाई दे रहे।

इक बड़ा वाला लाठी नीचे में नमा के है।

बेंबू भी दिखाई दे रहे और बादल भी दिखाई पा रहे --

और आसमान भी दिखाई दे रहे हैं और पेड़ सब भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहे हैं।

लाइट भी जल के है।

यहां एक रूम दिखाई दे रहा है इसमें एक बिस्तर है इसके ऊपर।